यह एक मोबाइल का दुकान है |

यहाँ पे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है |

यह पहाड़ बोहोत

यहाँ पे लोग बड़ा बड़ा --

यहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी लगी हुई है और कुछ --

पुराना सा मंदिर है। इस मंदिर में --

पूजा करने के लिये यहाँ पे --

उहे नमाज़ पड़ने के लिये --

यहाँ पे एक बोहोत सारे पुतले मे कपड़े पहना के खड़ा --

बोहोत सुन्दर निरित्य कर रही है।

और खिलौना अ बहोत सारे --

जिम है। जिम बहुत बड़ा है।